बॉक्स दिखाई दे रहे है एक बॉक्स में एल_जी --

उस रिक्शे के ऊपर ऑरेंज कलर मशीन रखी हुई है।

इस फोटो में एक किताबों की दुकान दिखाई दे रही है।

उन बकरियों का रंग सफेद और ब्राउन है।

उस केक के ऊपर गुलाबी और पर्पल कलर के--

इस फोटो में सफेद कलर की कार दिखाई दे रही है और--

इस फोटो में हरे और पीले कलर का एक--

और एक वाइट कलर कि कार दिख रही हैं।

बहुत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक कॉलेज की क्लास दिखाई दे रही है।

एक सर बच्चों को डांस सिखा रहे है।

इस फोटो में एक सफेद कलर का बहुत बड़ा--

उस जीम में काले कलर की बहुत सारी एक्सरसाइज की मसीन दिख रही है।

उस गाड़ी में एक बेनर लगा हुआ है।

इस फोटो में एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा है।

उस तालाब में बहुत सारे पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक दरगाह दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक गांव दिखाई दे रहा है।

उस दुकान में एक ऑरेंज टी-शर्ट पहनकर एक लड़का बैठा हुआ है।

उस होटल के सामने सफेद रंग की कार खड़ी हुई है।

कार दिखाइ दे रही है और एक आदमी उस कार को सुधार रहा है।

और नदी में पानी दिखाई दे रहा है।